जहां पर दीवाल पर हैवन ऑफ आइसक्रीम लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में हमें यहां पर ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है।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

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर कुछ बोट दिखाई दे रहे हैं।